फील्‍ड जगह पे बहुत सारे बाईक स्‍कूटी बहुत सारे लगा हुआ है एक साईकिल भी लगा हुआ है।

एक मे बाबा पूजा करा रहेे है।

इस जगह में बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है लगता है यहाँ घूमने की जगह है गार्डन गार्डन --

इस जिम करके सब हेल्‍दी बनाता है।

एक नये पंडाल बना हुआ है। इस नए पंडाल में एक दो-चार लड़की ये है दिखने में लगता है यहाँ कोसिके प्रोग्राम चल रहा है।

दिखने में लगता है बहुत अच्‍छे घूमने की जगह है।

एक तो ने उसमे है।